इस चित्र में एक बड़ी सड़क दिखाई दे रही है यहां बहोत सारे बड़े और छोटे भी पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है यहांबहुत सारे पेड़ भीलगे दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहां कुछ लोग भी दिखाई दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ एक वाइट कलर की कार भी दिखाई दे रही है।

दिखाई दिख रहे हैं यहां एक क्रीम और फिरोजी कलर की बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

इस चित्र में बहुत सारे ओटो दिखाई दिख रहे हैं यहां एक बड़ा पेड़ भी दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे हेलमेट रखे दिख रहे हैं यहां एक आदमी काम करता हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा किला दिख रहा है यहां एक बड़ा--

इस चित्र में दो बाइक खड़ी हुई दिख रही हैं यहां बहुत सारे पेड़ भी लगे दिख रहे हैं।

यहां कुछ पेड़ भी लगे दिखाई दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बाहर व्हाइट कलर का गेट भी लगा दिख रहा है।

पेड़ और पौधे लगे दिखाई दिख रहे हैं यहां एक ग्रीन कलर का पर्दा भी दिख रहा है।

इस चित्र मे एक बड़ा इस्कूल दिख रहा है। यहां बहोत सारे पेड़ भी लगे दिख रहे है।

इस चित्र में एक बुलुट खड़ी हुई दिखाई दिख रही है यहां कुछ पेड़ भी लगे दिख रहे हैं।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

इस चित्र में एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं यहां एक मशीन भी रखी हुई दिख रही है।